मुझे खिड़कियां भी दिखाई दे रहा है।

मुझे दो इंसाने भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे एक बनाना का पेड़ भी दिख रहा है।

मुझे बड़े बड़े मीरर्स भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे रस्ता भी दिखाई दे रहा है।

मुझे बहुत सारे फैन भी दिख रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

ये एक बड़ा सा टोर भी दिखाई दे रहा है।

मुझे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं मुझे एक गाड़ी--

मुझे दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

किसीम किसीम रंग के मुझे बहोत सारे चेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं जिसका रंग लाल रंग में है।

मुझे एक ग्रीन कलर का डोर मैट भी दिखाई दे रहा है मुझे दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक इलेक्ट्रॉनिक का दुकान दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।